यहां पे एक चौड़ा सा रोड दिखाई दे रहा है पक्का रोड रोड के पा--

टीन आका एक शेड दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का नीचे बागीचे म--

हपत्थर दिखाई दे रहा है पत्थर के ऊपर दो लड़का बैठा है एक सीव लेके ऊपर में बड़ा-बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है नदी का पानी यहां पे हरा दिखाई दे रहा है।

यहां पे जो शादी का मौसम दिखाई दे रहा है जहां पे एक स्टेज करके रखा हैएक फूलों जैसा सजा हु --

और उस छोटा-छोटा टॉप ऑफ वाइट कलर का सजा के रखा है उसने बहुत सारे --

यहा पे वाइट कलर का ब्लैक कलर का गाड़ी यहां यहां शोरूम का नीचे से निकल रहा --

यहां पे एक पहाड़ का गुहा है जो पत्थर से घेरा हुआ है और बहोत सारा अंदर में एक और--

यहां पे एक जमीन दिखाई दे रहा है जो घासों में हरा कलर का घासों में भरा हुआ है।

ऊपर बहोत बड़ा सा एक कछुआ दिखाई दे रहा है कछुआ चल के जा रहा है धीरे धीरे--

यहां पे जो रिसेप्शन रिसेप्सन में बन्दा ब्लेज़र पहनके ग्रीन कलर का बैठा है।

एक व्यक्ती खोद रहा है एक खोदने वाला जे_सी_बी जो होता है माटी खोदता है वो खोद रहा है यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन होगा पास में एक जनरेटर दिखाई दे रहा है बड़ा सा।

उसके सामने आयध लिखा हुआ है।

कुछ जिम प्रैक्टिस कर है। यहां पे एक खिड़की है सामने कंचों का। वहां बहुत सारे जिम का डिफरेंट टाइप का मशीन रखा हुआ हैं।

रेड लिस्ट लेडीज का का लिखा हुआ ।